दुकान में शीशा भी लगाया गया है।

फ्रॉक और सलवार भी दिख रहा है।

बाल्टी भी रखा हुआ है।

दुकान के अंदर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

इसको पूरी तरह से सजाया गया है।

रूम के अंदर सोफा और चेयर भी रखा हुआ है।

टेबल के ऊपर फूल भी रखा हुआ है।

वॉल में घड़ी को भी रखा हुआ है।

रस्ते के किनार में पुलिस का साइनबोर्ड भी लगा हुआ है।

बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में जगा दिखाई दे रहा है।

घड़ी भा दिखाई दे रहा है।

पोट भी दिखाई मिल रहा है।

लाइट भी जला हुआ है।

घर का रंग सफेद है।

वाल भी बनाया गया है।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

रूम के अंदर बहुत सारा लोहा भी रखा हुआ है।

रूम टीना से बना हुआ है।

पिक्चर में रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पेड़ भी दिख रहा है।

घर के अन्दर बैलून से सजाया गया है।

घर के बाहर डसबिन भी रखा हुआ है।

रुम के अंदर टेबल और चेयर भी दिखाई दे रहा है।

वहां बकेट भी दिख रहा है।

घर के बाहर फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है।

दरवाजा भी बंद दिख रहा है लाइट भी जला हुआ है।

नदी के ऊपर ब्रिज भी बनाया हुआ है।

ब्रिज के ऊपर फ्लैग भी लगा हुआ है।

टेबल और चेयर भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं।

खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में रास्ता दिखाई दे रहा है।